ये एक बहत सारी किताबो की दुकान है और यहाँ पे तरह तरह के किताबे है।

और यहाँ पे कुछ दो तीन जोड़ी कपड़े भी रखे हुए ह--

वो एक कोट की दुक कोट का जो कभर होता वो भी है।

यहाँ परे बहत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे फुटबाल का मैच चल रहा है चारो तरफ कुर्सीअ पे बैठे हुए लोग है जो मैच देख रहे है।

यहाँ पर एक सलून की दुकान है और यहाँ पर अंदर की तरफ एक आदमी फोन पे बात कर रहा है खड़े हुए और कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए है.

और इसमें यहाँ पे जैकेट वकेट भी टंगी हुई है।

कुछ मैदान सा है और ऊपर की तरफ सूरज छुपा है और वहाँ से जो है --

यहाँ पर बहत बड़ा हल सा है और यहाँ पर कुछ फोटो सी लगी हुई है और यहाँ पर बहत सारी कु चेयर है ये मेज भी पड़ी है और और उनके दोनों तरफ चेयर है।

एक दुकान है और इसमें बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं और तरह तरह के डिब्बे हैं और यहां पे बहोत बड़े-बड़े डिब्बे भी है और यहां पतले-पतले हैं ये जैसे नेकर के होते है अंडरवियर के --

ये काउंटर है और यहाँ पर जो है एक स्टूल भी दो तीन स्टूल रखे हुए है और काउंटर में भी कुछ सामान रखा हुआ है।

उम और जो ऊपर का फोआरा है वो माचिस की तरह है पाइप लगे हुए है।

बहोत सारे अ पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे हुए है अ बहोत सुंदर लग रहा है यहां पे--

यहाँ बहत बड़ी बिल्डिंग है और बहत सारे बिल्डिंग है यहाँ पर--

पर उसके साइड से सड़क जा रही है और उसकी दूसरी तरफ भी बहत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

और कुछ लड़को ने भी धोती कुरता पहन रखा है और एक एक के हात में है--

उसके बराबर में क्रेड लगा रक्खे है क्रेड के ऊपर भी टी बी रखे है केले रखे है संतरे रखे है अनार रखे है।

ये सुइमिंग-पुल है और यहाँ पर चार पाँच पाइप से लगे हुए है गोल गोल राउंड में और उसे परके पकड़ के लोग घूमते है।

दुलते है और गो सुइमिंग मतलब पानी में टहरते है और उधर की तरा पीछे की तरफ सारा के सारा गार्डन है और बहत सारा झूले भी लगे है।

और यहाँ पर ऊपर की तरफ नीले रंग से पैंट है और यहाँ बजाज लिखा हुआ है।

और पत्थरो की सीड़ी बनी है और वहाँ से जो है लोग चारो तरफ से --

और ये बहत सारे मंदिर वंदिर भी है।

पार्किन की जगह है और ऊपर की तरफ टिन लगी है नीचे की तरफ बहत सारे गाड़िया खड़ी हुई है.

और इधर की तरह बहत सारा गार्डन है और यहाँ पे बहत सुन्दर सुन्दर फूल पत्ती लगी हुई है बहत सुन्दर सुन्दर पेड़ है और फूल भी बहत सुन्दर है।

बिल्डिंग है और यहाँ सायद फायर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है।

ये एक लाल जीप खड़ी है और यहाँ गेट बंद है अंदर की तरफ बहत सारे फूल पौधे लगे हुए है--

बराबर से दोनों तरफ है मुर्तीया रखी हुई है और इधा इधर भी पीछे की तरफ भी मंदिर है यहाँ पे सब में टाइल टाइले लगी हुई है और उम पत्थर बिछा हुआ --

और एक डिब ढक्कन सा पड़ा हुआ है और बहत सारा सामान है यहाँ पर--

और पुल नदी है नीचे ऊपर पुल बना हुआ है--

सज रहा है यहाँ पे बहत सरे --

अंगेल बने हुए है और यहाँ पर टेंट लगाने की तैयारी चल रही है।

ये यहाँ पर बहत बड़ा मंदिर है बहत ही बड़ा बहत दुरी दूर दूर तक बना हुआ है और इधर की तरफ सारे में सारे हु खली मैदान है।

और बिजलीका है यहाँ पर मट्टी भी पर मट्टी का टीले पड़े है।

यहाँ पर रोड है और बीच में डिभाईडार है और सामने की तरफ बहत सारे दुकाने है जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए है बैठे है--

और यहाँ पे कुछ लोग पैदल ही जा रहे है इधर उधर और इधर दुकाने उप्पर भी है।

बहत बड़ा हल पड़ा है हल है और यहाँ पर गोल सर्कल में यहाँ पर घास लगी हुई हे बीच में--

ऐल _सी _डी टी _बी यहाँ और बहत सारे लाइटे लगी हुई है दिन का समय है लाइट दिखाई नहीं दे रही है।

और यहाँ पर कुछ है एक लड़का है एक लड़की है सायद--

जो यहाँ पे कुछ लोग है जो काम कर रहे है।

और अंदर की तरफ एक कार खड़ी हुई है और कुछ लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और इसमें बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और ये बहोत बड़ा--

ये एक दुकान है और इसमें बहत सारे शोपीस के सामान रखे ह--

कुछ कैन रखी हुई है कुछ दारू के बॉटले भी रखे हुए है।

रबर पोर्ट रखा है और सामने के तरफ एक पंखा लगा हुआ है।

और सड़क है और सड़क पे भी लोक टहल रहे है एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है।

जो यहाँ पर बहत भीड़ है और सबने मास्क लगा रखा है।

ये एक कॉपी किताबो की दुकान है और यहाँ पर बहत सारी किताबे रखे है।

यहाँ पर बहत सारे मूर्ति है गणेश जी की मूर्ति है और यहाँ पर--